ये वॉटर पार्क का फोटो है। वॉटर पार्क अभी पूरा बना नहीं है। देखने से लग रहा है कि अभी काम चल रहा है।

यह किसी बाजार का फोटो दिखाई दे रहा है। बाजार में ढ़ेर सारे कपड़े के दुकान और इलेक्ट्रॉनिक दुकान भी दिखाई दे रहा है।

यह किसी गेैराज का फोटो है | गेैराज में मैकेनिक लोग गाड़ी का पहिया बना रहे हैं|